जो इसके बाजू मे ये चेयर वगैरा लगे हुए है ये होटल है होटल के सामने ये चेयर रखे है ।

जब पानी बाढ़ वगैरा आती है तो अभी तो फिलहाल ये बंद है तो यहाँ पर पानी बहुत कम है नहीं तो ये गेट खुल जाते है तो --